यह एक मैदान है जिसकी मिट्टी सूखी ही जिसका रंग भूरा है।

यहां पर भगवानों के ऊपर मालाएं चढ़ी हुई है जिनका रंग सफेद लाल पीला हरा है।

यहां पर एक महिला है जिसने सफेद रंग की चादर ओढ़ी हुई है।

यहां पर दीवाल में कुछ चित्र बने हुए हैं यहां पर सीढ़ियों का रंग काला है।

वह एक सब्जी का दुकान है जहां पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है जैसे कि आलू बैगन मकई करैला।

उसने नील तथा काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं उसने आसमानी रंग के जूते पहने हुए हैं।

वहां पर जमीन का रंग भूरा है ।

यहा पर एक पेड़ भी है जिसकी पत्तियां हरी है।

यह एक बगीचा है बगीचा के चारों और लंबे लंबे घने घने पेड़ लगे हुए--

बगीचा में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जिसका रंग पीला लाल हरा इत्यादि है।

साइकल जहां पर खड़ी है उसकी जमीन की मिट्टी काली है।

शीशे के उस पार एक बड़ा रूम है जहां पर सजावट हो रखी है वहां पर एक व्यक्ति खड़ा--

शीशे के इस बार एक व्यक्ति खड़ा है जिसने नीले सफेद तथा काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं।

यह एक बहोत बड़ा कमरा है जिसके दीवाल का रंग सफेद तथा धूसर--

यहां पर एक बहुत बड़ा कुआं है यहां पर मैदान में बहुत सारे आदमी खेल खेल रहे हैं जहां की मिट्टी सूखी हुई है ।

यहां पर साइकिले रखी हुई है जिसका रंग काला है।

यहां पर एक एंबुलेंस भी है यहां पर दो पहिया वाहन है जिसका रंग काला है।

के सामने कुछ पेड़ लगे हुए हैं जिसकी पत्तियां हरी है पुस्तकालय में चार खिड़कियां है जो जिसमें काले रंग के शीशे लगे--

यहां पर दीवाल में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग हरा तथा सफेद है।

यहां पे दीवाल का रंग पीला तथा सफेद है।

यहां दुकान में रैके कर रखी हुई है जिस पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

दीवाल का रंग सफेद है यहां पर नौ कुर्सियां लगी हुई है।